खेल-खिलौने भी हैं पिंजरे जेसे भी लग रहा हैं कि जू हो क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हैं लेकिन पता नहीं कि यह असली है या नकली है।

उसके ऊपर बहुत सारे बाल भी डले है क्यूंकि अभी उसके बाल कटे है और इसका माहौल पूरा हरा-भरा सा दिख रहा --